इस फोटो में तम देख सकोय यह कोई बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है और इसमें ये पत्थर वगैर भी दिखाई दे रहे है इसके चारों तरफ--

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं आप को हर तरफ चेयर वगैरा दिखाई दे रही है बैठने के लिए।

जो ऊपर बना हुआ है इसके नीचे से आप देख रहे हैं ट्रक जा रहा है।

और बहुत सारे बलूंस वगैरह लगाए हुए हैं काफी--

ये आप पीतल के गिलास लोटे वैगरा भी देख सकते हैं।

और इस फोटो में यहां पे सब देख सकते हैं कि एक बड़ा टावर वगैरा दिखाई दे रहा है।

और इसपे जगह जगह आप ये देख सकते हैं शायद लाइटिंग वगैरा लगी हुई है ऊपर डिस वगैरा की छतरी वगैरा दिखाई दे रही है।

पेड़ वगैरा लगाए हुए हैं और इनकी बाउंड्री वगैरा की गई हैं।

यहां पे ट्रैक्टर रखे हैं जो जाता हुआ दिखाई दे रहा हैं लाइटिंग वगैरा दिखाई दे रही हैं।

जॉन के नाम से भी कुछ लिखा हुआ है जहां पर टायर वगैरह मिलते है और एक वर्कशॉप है जहां पर गाड़ियां ठीक की जाती है एक आदमी है जो गाड़ी को ठीक कर रहा है एक ऑटो है।

इस फोटो में आप देख सकते हैं ये कॉस्मेटिक शॉप है जिसमें हर जगह समान दिखाई दे रहा लेडिज की बिंदिया चूड़ियां।

पाउडर आदि अं समान रखा हुआ है जैसे चुनरी वगैरह छोटे छोटे टेडी बीयर शैंपू वगैरह हैं।

और काफी फूल वगैरह सजाए हुए हैं खाने के लिए बर्तन वगैरह रखे हैं।

यह किसी ट्रक के अंदर भरे हुए है और इसमें देख सकते है आफ काफी डब्बे है जो--